बस बस निकल के जा रही है। थ्री पर्सन उनको देख रहे हैं।

यहाँ एक ऑटो निकल के जा रहा है ऑटो के पीछे --

यह एक अच्छी प्लेस है सत्यमेव जयते लिखा हुआ है।

काला काला बैकग्राउंड है इसके पीछे आगे लाइटिंग --

यहां पर स्टूल दिखाई दे रहे है तीन-चार लाइन लाइन से स्टूल रखे हुए है स्टूल पर मशीने रखी हुई है।

लड़का बैठा हुआ है दुकान में सामान रखा हुआ है।

संडे के दिन ये बंद रहता है इसमें गाड़ियाँ खड़ी हुई है कुछ लोगन बै खड़े हुए हैं।